और बहोत सारे लोग बीच के किनारे एंजॉय कर रहे--

इस फोटो में एक बोर्ड दिख रहा है महफिल गार्डन रेस्टोरेंट ।

में दो गेट है एक छोटा गेट एक बड़ा गेट है और उसके गेट के अंदर गाड़ी खड़ी है फोर व्हीलर --

और येलो ग्रीन कपड़े में बहोत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है।